इस पे इसके अगल-बगल बहोत सारी रेलिंग भी लगी हुई हैं।

बहुत प्रकार के डांस सिखाए जाते है यह उनके साथ उनकी टीचर है।

ये एक रेस्टोरैंट --

ये दो भालू हैं और यहाँ पर बड़ी-बड़ी बाउंड्री भी है। ये जंगल का नजारा है और बहोत बड़े-बड़े पत्थर भी हैं।

बच्चों के मनोरंजन के लिए हैं।

दे रहा है और काफी फसल बहोत सुंदर हुई है।